अपना लाइफ में हर किसी का शोंक रहता हैं कि मेरा भी अच्छा-अच्छा घर हो।

मोटरसाइकिल का सर्विसिंग किया जाता है। जो की यहाँ पे बहुत ही अच्छा से किया जाता है । इसलिए हर किसी को आकर यहीं पे अपना मोटरबाइक का सर्विसिंग कराना चाहिए।

जोकि अत्यंत सुंदर लग रहा है। हर किसी को ऐसा ही राष्ट्र्वादी का भावना अपना मन में रखना चाहिए।

यहाँ पर इलेक्ट्रीसिटी के द्वारा ही ट्रेन का परिचा परिचालन किया जाता हैं।

और ओ देखने में अच्छा लगे। इसलिए यहाँ पे आते हैं जिम करने के लिए। जिम करने से उनका उमनिटी भी बढ़ती हैं।

यह एक बैंक है और यह बैंक का नाम पंजाब एंड सिंध बैंक है। यहाँ पर --

और अलग - अलग जगह पर इस पानी का उपयोग किया जायेगा पीने के लिए भी किया जायेगा।

बच्चे लोगों को यहाँ पे आई.टी.आई करवाया जाता है। कम पैसे में आई.टी.आई करवाया जाता है। हर किसी को आ के अपने बच्चे को यहीं पे एडमिशन लीवाना चाहिए।

जिस कारण यहाँ पे बहोत सारे लेबरों का --

टेबल पर रहेगा और पांव इस पार उस पार कर देगा औ बीच ओ बीच में अपना पीठ के बल पर पुरा बॉडी का भार को उठा लेगा।

यह एक बस है और यह बस एक जंगल में चलता है और यह जंगल का नाम है बंदीपुर टाईगर रिजर्व यहाँ पर टाईगर है और --